बॉर्डर भी दिया हुआ है सामने उसमे जय झूलेलाल लिखा हुआ है।

ए एक सुबह का सुन्दर दृश्य है जिसमे हल्का कोहरा दिख रहा है।

यह एक समुन्द्र है समुन्द्र के बीचो बीच खड़े हो कर --

और यहाँ झंडा फैराने की तैयारी हो रही है।

चारो तरफ कुछ बसेस दिख रही हैं पीछे पेड़ दिख रहे है बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिख रही है।

यह लक्ष्य लाइब्रेरी है जहाँ पे मुझे स्वामी विवेक आंनद जी का फोटो दिख रहा है बहोत सारी चेयर और लाइब्रेरी --

यह एक गाँव है जहाँ पर सामने झोपड़पट्टी है।

यह एक फवारा है जिसमें पानी बहोत ऊपर तक जा रहा हैं।

मैंगो पाउडर बूस्ट बॉर्न्विटा और एक रस्सी दिख रही है।